काफी सारी मालाएभी लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ दूरी पर--

और यहाँ पर एक पंडित जी भी खड़े हुए हैं ।

काफी भगवान के फोटो भी दिख रहे है।

यहाँ पर लोहे के काफी सामान रखे हुए है।

पाजी पैथोलॉजी लैब लिखा हुआ है उसे नीचे वाले बोर्ड --

इस शॉप का नाम सुरेंद्र मैदान --

यह लक्शा इंटरनेशनल अकेडमी है।

यह एक स्टोर है।

--जोकि काफी सुन्दर दिख रहा है यह दो मज़िला है जोकि पूरा वाइट कलर से पुता हुआ है।

और ब्लू कलर का जीन्स का पैंट पहना है।

--लोग भी खड़े हुए है यहाँ पर कुछ लोग लिफ्ट से ऊपर भी जा रहे है।